पास में ही एक बड़ा सा गटती खड़ा है। आसपास में भी बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत दूर जगह लेकर है और इसमें है बहोत सारा पानी।